पत्ते हरे हैं सामने खिजड़ी का पेड़ हैं।

इस पर इंडियन आइसक्रीम कुल्फी फालूदा--

सामने का दृश्य एक कॉफी शॉप का है इस कॉफी शॉप का नाम--

ये जो सामने बिल्डिंग है। यह सिंधी कैंप पर स्थित है।